पार्क में बहुत से पौधे दिखाई दे रहे है कुछ बड़े दिखाई दे रहे है कुछ छोटे दिखाई दे रहे है कुछ फूले हुए दिखाई दे रहे है।

भोत से आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे है खिड़की दिखाई दे रहा है दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

मकान के बाहर दो गाडी दिखाई दे रही है एक हाथचेला दिखाई दे रहा है और दो से तीन व्यक्ति खड़े हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे है।

जैसा की देख पा रहे है बहोत सारा खेत दिखाई दे रहा है खेत में हरा हराभरा दिखाई दे रहा है।

जैसा की हम देख पा रहे है एक मकान दिखाई दे रहा है मकान दो मंजिल का दिखाई दे रहा है मकान का गेट भी दिखाई दे रहा है खिडकी भी दिखाई दे रही है।

बालकनी भी दिखाई दे रही है बाहर एक टेबल भी दिखाई दे रही है टेबल एक मछलियाँ रखा दिखाई दे रहा है।

जैसा की हम देख पा रहे है एक नेट दिखाई दे रहा है नेट के अंदर एक सेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है सेर के बाजू से --

जैसा की देख पा रहे है एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है उस नदी में इंक शिप दिखाई दे रहे है उस शिप को दो लड़के --

जैसा की हम देख पा रहे है एक दूकान दिखाई दे रहा है उस दूकान पे एक टेबल दिखाई दे रही है एक खुर्सी दिखाई दे रही है बहुत सारे बॉ --

एक घर भी दिखाई दे रहा है बहुत से पेड दिखाई दे रहे है पेड़ काफी बड़े दिखा बड़े बड़े दिखाई दे रहे है और --